और बहुत सारे मनुष्य लोग भी दिखाई दे रहा है।

और नीला आसमान में बादल सफेद दिखाई दे रहा है।

और सामने में तीन फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है।

सस्वीर पर मुझे बहोत सारे बिल्डिंग सब दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ सभी दिखाई दे रहा है।

इसपे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है।

बड़ा सा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है जिस पर बहुत सारे खिड़की और दरवाजे हैं।

और बगल में एक बड़ा सा पेड़ भी है।

इस तस्वीर पर मुझे बहोत सारे बरे बरे बिल्डिंग सब दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर मुझे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर मुझे एक बहुत बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

और पीछे बहुत सारे पेड़ सब भी हैं।

बिल्डिंग के बाहर दो गाड़ी और एक स्कूटी भी पार्क करके रखा हुआ--

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

दीवार हरा रंग का दिखाई दे रहा है।